घर के बाहर में एक गेट लगा हुआ है गेट से लॉक है गेट का कलर जो की मल्टी कलर दिखाई दे रहा है गेट के बगल में दो पिलर खड़े हुए हैं।

बहोत सारे लोग दिख रहे हैं जोकि छत पे काम करते हुए दिखाई दे रहे है।

गड़ा हुआ है जो की रेड कलर का है उसके बगल में एक लड़का जो की खड़े हुए दिख रहे हैं।

और ये सारी बकरी एक तार के अंदर दिखाई दे रहा है कुछ बकरी घास खाते हुए--

और अपने बालों में गजरा लगाये हुए दिख रही है इसके पीछे एक--